बोर्ड भी लगा है इस बोर्ड में कुछ लिखा हुआ भी दिख रहा है ए .सी भी है ।

इस गार्डन में बहुत सारे लोग घूमते हुए नजर आ रहे है।

यहाँ दो खुर्सी भी लगा है अगल मे बगल अगल-बगल मे सीढ़ी भी है।

बहुत बड़ा -बड़ा मछली है झिंगा मछली है |

इसके उपर गद्दा है तकिया है शाल कंबल रखा गया है कुर्सी भी है।

उसके अगल-बगल मे पेड़ भी दिख रहा है और उसके बगल मे एक और बस दिख रहा है।

कॉपी पुस्तक भी दिख रहा है।

एक लड़का सेल्फी ले रहा है आगे से--

हरा -हरा पौधा घास -फूस है यहाँ पे सीढ़ी है ।

जो जाने के लिए बना हुआ है।